इस चित्र में सुनहार की दुकान दिख रही है।

कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

एक्सरसाईज की मशीन रखी हुई है।

इस चित्र में एक लाउंड्री दिख रही है।

बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं।

कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक सूखे पेड़ पर चुड़िया बैठी हुई हैं।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

इस चित्र में कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

मम्मी डैडी शोरूम लिखा है।

सामने एक परचुनी की दुकान है।

इस चित्र में एक होटल दिख रहा है लाल और नीले पर्दे दिखाई दे रहे हैं टेबल कुर्सी दिख रही है।

काली और लाल कुर्सियां हैं।

इस चित्र में एक मस्जिद दिखाई दे रही है आसमान में बादल है।

इस चित्र में एक गाड़ी दिख रही है।

इस चित्र मे एक मंदिर दिख रहा है।

कुछ होटल दिख रही हैं।

खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में एक ऑफिस दिख रहा है।

एक मूर्ति दिख रही है जो काले रंग की है।

यहां पर बंम्बू की चटाई बनाई है।

आसमान में बादल हैं जिनका रंग सफेद है।